सामने साइकल्स लगी हुई हैं औड़ एक दो व्यक्ति भी नजर आ ड़हे हैं।

लगी हुई है सभी पीले कलर की है औड़ --

चारों तरफ हमें लाइट्स नजर आ रही है नीचे कुछ सामान पड़ी हुई है।

मंदिर और बहोत ही सुंदर और अद्भुत है।

यह कोई बहोत ही बड़ा सा कॉलेज है ऐसा लग रहा--

द्वार भी इसका काफी बड़ा है प्रवेश द्वार हमें फील्ड में एक स्कॉर्पियो और बाहर एक पुलिस सर्विस मैन दिख रहे हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर सा हमें मंदिर लग रहा--

दिखाई दे रही है काफी सुंदर लग रहा है यहां घर का डिजाइन और चारों तरफ जो पौधे लगे हैं।

सुंदर यह नजारा है और कुछ व्यक्ति लोग भी नजर आ रहे हैं बैठे हुए अगल बगल।

लाइट्स लकी लगी हुई नजर आ ड़ही है दुकान के बाहर बहोत सारे सामान अंदर में दो कुर्सियां दुकान में आए हुए--

उसे बहते हुए पानी ठंडे ठंडे नजर आ रहे हैं बहोत ही ज्यादा पेड़ पौधे हड़ीयाली जंगल--

यह एक मेडिकल शॉप है ऐसा लग रहा है। चारों तरफ अन्दर की दीवारों में सजाती हुई कुछ मेडिकल की--